कार के अंदर कुछ आसपास चैने लटकी हुई नजर आ रही है लोहे की जंजीरे --

यह चित्र एक नाई की दुकान का है जहाँ बाहर की और एक कांच का केबिन बना हुआ है।

यह चित्र एक जगह का दिख रहा है जहाँ काफी सारी अ बांस से बाउंड्री बनी हुई है।